सामने में ही एक बहुत बड़ा सा क्रिसमस ट्री है।

उसके पीछे एक बहुत बड़ा सा बिल्डिंग है जो की स्किन कलर का पेंट है।

हमें पैंट और बहुत सारे दो तीन पेन कपड़ा सब लाइन से स्ट्रेंज करके रखा गया है।

में बहुत सारा अह बड़ा वृक्ष ये सब भी दिखाई दे रहा है।

यहाँ का वाल का कलर भी वाइट कलर है।

और ये जो ग्राउंड फ्लोर है ग्राउंड फ्लोर का कलर ब्राउन है।

हां यह मे घर में बहुत सारा फ्लावर पोर्ट दिखाई दे रहा है।

इसमें हां वो घर को ऊपर से बहुत सारा लाइट है सब नीचे तरफ गिरते हुए दिखाई दे रहे हैं।

जिसमे बहोत सारा सीमेंट सब यूज़ किया करने वाला दिखाई दे रहा है।

और यहां में साइड और लेफ्ट तरफ में और सब जगह में लोहा से ही बनाया वाला सामान सब दिखाई दे रहे है।

और दो लेफ्ट साइड का दो जो रखने वाला है उसमे वाइट कलर का चश्मा रखा गया है।

जो है वो एक दम बड़ा सा ब्रिज का है जो कि ये तावांग में है।

है और ये जो ब्रिज है वो लोहा से बनाया है।

में एक दुकान में दो तीन आदमी सब दिखाई दे रहा है।

और उसका साइड में ही बहुत सारा अह पॉलीथिन से ढका हुआ है।

जो हमें सुपर मार्केट दिखाया गया है।

घर में दो तीन आदमी है और एक आदमी जो है वो गाना गा रहा है।

दो आदमी सीमेंट को लोड कर रहा है।

और या में वॉल्स जो अ यहां का वॉल है वह ऑरेंज कलर का पेंट किया है।

व्हाइट में पिलर बहोत सारा अलग अलग पिक्चर सब रखा गया है।

यह जो पिक्चर है वह एक दुकान का लिया गया है।

और वहां में एक स्टेज भी है और साइड साइड में बहुत सारी खिड़कियां भी है।

और ऊपर में दो तीन फैन भी दिखाई दे रहा है।

पिक्चर में हमे एक स्विमिंग पुल दिखाई दे रहा है जो कि उसका पानी का कलर थोड़ा ग्रीन टाइप का है।